यहां पे हमें लाल रंग के बैलून दिखाई दे रहे हैं।

यहां चित्र में हमें यहां पे बहोत बड़े बड़े बिल्डिंगे के दिखाई दे रही हैं।

इस फोटो में हमे यहां पे--